मुझे चित्र में नींबू दिख रहा है।

चित्र के अंदर मुझे कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे सीलिंग फैन दिख रहा है।

कटनी जंक्शन स्टेशन का बाहर दिख रहा है चित्र में मुझे कुछ स्टीकर दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे प्रियदर्शनी बस स्टैंड नगर कटनी का बोर्ड दिख रहा है।

चित्र में मुझे कुछ लाइट की वायर दिख रही हैं।

चित्र में मुझे एक माजा के बॉटल दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे कुछ ईरानी अ शॉप दिख रहा है।

चित्र में मुझे गुफा टाइप दिख रहा है।

चित्र में मुझे बहोत सारे कपड़े दिख रहे हैं।

इस चित्र में मुझे लड़का मोबाइल पकड़े हुए दिख रहा है।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

चित्र में मुझे एक स्कूटी दिखाई दे रही है।

चित्र के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।